इस चित्र में एक बिल्डिंग बनी हुई जो की बहुत बड़ी दिख रही है साथ इसके अगल बगल में बिल्डिंग के बनी हुई जिसका दरवाजे सीसे की बनी हुई है |

साथ ही इसके पीछे बहुत बड़े-बड़े से पेड़ लगे हुए हैं जो की बहुत लंबे और हरे-भरे से दिख रहे हैं उसके पीछे टावर भी दिख रही है जो कि सफेद रंग की है साथ ही आसमान बहुत साफ दिख--

में एक बस स्टैंड बनी बानी हुई जो की बहुत बड़ी दिख रही है जिसमें के प्रकार के बड़े-बड़े से बस है जिसका रंग सफेद और नीला है ।